यहाँ पर काफी सारी घास उगे हुए हैं।

हरे -हरे पेड़ -पौधे यहाँ पर लगे हुए --

मैं देख पा रही हूं कि एक रोड है जहां पर गाड़ियां चल रही है और एक साइकल भी चल रहा है।

काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है ये काफी लोग हैं यहां।

काफी सारा ईंटा यहां पर रखा हुआ है।

बैठने के लिए कुर्सियां भी इनके लिए रखी हुई है।

ये नर्सरी क्लास है ये नर्सरी है जहां पर गमले में छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

और काफी लोग आऍं हुए यहाॅं पर।

और टाइल्स भी यहाँ पर लगा हुआ है नीचे --

यहां पर काफी सारी गाड़ियां आई हुई हैं।

काफी सारे बैलून यहां पर है गुब्बारे यहां पर है।

यहां पर भगवान की मूर्तियां है बहोत सारी--

काफी बड़े बड़े पेड़ हैं यहां पर और काफी बडे बड़े चट्टान पत्थर यहां पर हैं।